पौधे भी दिखाई दे रहा है। काले गेट पर एक गाड़ी एक आदमी भी।

यहा एक मंदिर दिखायी दे रहा है जिसमें की एक बुद्ध भगवान् --

दो जेंट्स है और कुछ घांसे भी --

ये काम कर रहे हैं। पोखरा में बहुत सारा छोटे-छोटे हाथ भी है। पोखरा के साइड में --

और कुछ व्यक्ति ऑटो चला रहे हैं।